मैं देख पर रही हू यहाँ पर एक बैंक के बाहर की तस्वीर जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ोदा जिसमें एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है और दूसरा व्यक् --

मुझे दिखाई दे रहा है यह बगीचा जिसमे की पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूल लगे हुये है और गुलाब का फूल भी लगा हुआ है ।

क्योंकि यह मौसम पतझड़ का है जिसकी वजह से सारे पेड़-पौधों की पत्तियां झड़ रही हैं और यह जमीन पर गिर कर इस मौसम को और सुहावना कर रही हैं ।

और बैंक के बाहर चैनल लगा हुआ है और कुछ मीटर भी दिखाई दे रहे हैं। ये बैंक ऑफ बड़ोदा के साइड में ही एक एटीएम भी --

मेरे सामने एक मैकेनिक जोकि कार की मरम्मत कर रहा है। इस कार में स्क्रैच आ गया था जिसको ये सही करने की कोशिश कर रहा है। इसमें ये --

मुझे दिखाई दे रहा है यह गार्डन जोकि बहोत ही भव्य तरीके से सजा हुआ है| इसमें सामनें सोफ़े लगे हुए हैं और पीछे इसके लाल और सफेद कलर की चेयर लगी हुई हैं| चारों ओर पर्दे --